लग रहा है यह पक्षी --

इस स्टेशन में बोहोत सारी गड़िया ट्रेने रुकती है। यहाँ से लोग ट्रेनों में सफर करते है। इस स्टेशनों में लोगों की काफी भीड़ लगी रहती है। ये स्टेशन काफी बड़ा भी है।

यह एक हाथी है। हाथी हमें जंगलों मे दिखता है। कभी-कभी यह हमारे गांव घर तरफ भी आता है। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है।